छट काय पूजा हो रहा है।

इसमें अनेक सारे कमरे भी हैं।

इस मंदिर के किनारे अनेक सारे तार के पेड़ हैं।

यहाँ पर काफी लकड़ी भी रखे गए हैं।